इस घर के सामने तोरी की बेल जमीन पर पड़ी हुई है और बोहोत सारी घास पूस उगी हुई है इस घर के पीछे बोहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पोरोनिक स्थल की तस्वीर है। यहां पर पत्थरों पर बहोत ही सुंदर कलाकारी की गयी है। कलाकारी में बहोत सारे मुर्तियां बनाई गई हैं।